गुलाबी काला है और अंदर कुछ व्यक्ति बयास्त नजर आ रहे है और ऊपर लाइट्स भी लगी हुई है ।

डॉक्टर ने शर्ट और पैन्ट पहना हुआ है इन को चश्मा भी लगा हुआ है डॉक्टर कुछ मशीन से वयक्ति पीठ में चेक कर रहे है।